और इसके बगल में रेड कलर का पोस्टर लगा हुआ शीशे का गेट लगा हुआ है और--

पोस्टर लगा हुआ उसके बगल में एक।

सामने पेड़ लगे हुए हैं बड़े।

छत पे पंखे लाइट लगे हुए हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है। दूसरा आदमी ईटे लेकर जा रहा।

सामने तीन मूर्ति दिखाई दे रही हैं और गेट लगा हुआ है। सामान भी कुछ रख --

पेड़ लगे हुएफ जस्ट उसके पेड़ बड़े बड़े लगे हुए हैं।

गेट दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े।

सामने एक बस दिखाई दे रही है। एक आदमी आ रहा है और एक पीछे से कार जा रही है।

और अलमारी तरह कुछ बना हुआ है।

जीने प बने हुए हैं तार लगे हुए हैं।

पीछे और कई सारे खंबे लगे हुए हैं।

और नीचे लिफ्ट वाले जीने दिखाई दे रहे हैं तीन पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड लगा हुआ है फिर दो गमले दिखाई दे रहे हैं।

पेंट हुआ है दो पोस्टर लगे--

पोस्टर लगे हुए नीचे सामान ले रहा है आदमी।

अंदर बने हुए हैं और खिड़की भी लगी हुई है कई सारी व्हाइट --

सीट दिखाई दे रही है।

फिर उसके पीछे मशीनें कुछ दिखाई दे रही हैं।

और घास लगी हुई है।

तीन पेड़ और लगे हुए हरी भरी घास भी लगी हुई है।

व्हाइट कलर का पेंट हुआ--

सामने चार आदमी बैठे हुए भजन गा रहे हैं।

सजावट हुई है फूलों से।

एक आदमी कार पास खड़ा हुआ है।

सामने व्हाईट येलो कलर की सीलिंग दिखाई दे रही--

सोफा और है कुर्सी मेज रखे हुए हैं और एक औरत दिखाई दे--

ग्रीन कलर की भी कुर्सी रखी हुई हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये कपड़े फैले हुए हैं और एक खंभा लगा हुआ है।

और एक बच्ची जा रही है और कई सारे आदमी भी है उधर भी--

सिल्वर और गोल्डन कलर का भी गेट है और एक आदमी आ रहा है।

पीछे सजावट हुई है पर्दे लगे हुए हैं कई सारे लोग और दिखाई दे रहे हैं।